जैसे की रिसेप्शन टाइप है कोई।

और उसके ऊपर कप वगैरा भी रखे हैं सैनिटाइजर भी इधर है।

सोफे भी है एल टाइप सोफा बिछा हुआ है नीचे जो काफी सुंदर लग रहे हैं।

काफी हरियाली है यहां पर।

और दो बंदे हैं यहां पर एक बंदा फोन पर बात कर रहा है यहां पर काफी सामान रखा है एक टेप रखी है काउंटर पर।

और मंदिर की गेट पे घंटा भी टंगा हुआ है माला भी टंगी हुई है।

एक बंदा विंडो के पास खड़ा है उसके पास सायकल खड़ी हुई है।

यह कोई पेट्रोल पंप है।

और एक ऊपर बोर्ड लगा है।

ये कोई एम के फिटनेस जीम जिम हैं।

इधर टी शर्ट वगैरा भी ब सामने शीशा भी लगा है।

और ऊपर मीटर भी लगे हुए है।

और ऊपर एक गोल वाली लाइट भी है रिंग लाइट बोलते हैं जिसको।